एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है।

इस चित्र मे एक दुकान दिख रही है।

इस चित्र में एक स्टेज दिख रहा है।

कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।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

एक आदमी खड़ा हुआ है।

नाव अलग अलग रंग की है।

कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक शादी हॉल दिख रहा है।

एक गार्डन दिख रहा है।

खिलौने रखे हुए हैं।

कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

एक सड़क दिख रही है।

जिसका रंग कत्थई है।

इस चित्र में एक खेल--

आईना लगा हुआ है।

फूलों की माला दिख रही है।

इस चित्र मेंकुछ बच्चेदिख रहे हैं।

नीली कुर्सियां रखी हैं।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

लाल दुपट्टा पहनी है।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

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

जो पानी मे नहा रहे हैं।

सफेद कलर से कुछ बनाया है।

एक औरत नजर आ रही है।